चाणक्य इंस्टिट्यूट है जहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है उसके साथ एक ब्यूटी पार्लर की दुकान भी है।

इमारतें छोटी ईंटों व मिट्टी से बनी होती थी यह बहुत मजबूत इमारत है।

इसके आगे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह चित्र ई_एस_आर झज्जर लॉजिस्टिक पार्क का में गेट का--

दो लोहे की बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं यहां से लोग--

सामने डी_जे का पूरा सेटअप लगा हुआ है इस डी_जे का नाम हैप्पी डी_जे साउंड है।

और दीवार पर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

यह क्षेत्री अनुसंधान केंद्र के बाहर का चित्र है।

मंदिर में जगह जगह बहोत सारी ध्वजा लगी हुई है।

एक हाथ के ऊपर नेस्कैफे की काफी से भरा म कप रखा हुआ है।

यह चित्र एक क्रिकेट अकॅडमी का चित्र हैं जिसका नाम इंडियन वेरियस क्रिकेट अकॅडमी हैं।

इस गौशाला के एक कोने पर दो संत्री कलर के--

इसमें हर कमरे के आगे उस डॉक्टर के नाम का--

द्वारा लिखे हुए कुछ रचनाएं या गीत हैं।

इस चित्र में मां दुर्गा के अन्य स्वरूप भी हैं।

इसमें गजानन गणेश का चित्र भी हैं।

यह एक सेशंस क्लॉक का चित्र है।

जिन्हें हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं।

यहां पर एक लड़का अपनी सेल्फी ले रहा है वह अपने घर के बाहर खड़ा है।

वे वहां का मेनू कार्ड रखा गया है।

यहां पर चौकी के हर एक वस्तु है।

सामने कई तरीके की ट्रेडमैन भी है।

एक अन्य व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा है और वह लाल पेन से कुछ लिख रहा है।

फुटबॉल के ग्राउंड का कलर नीले रंग का हैं।